हमें यहां पर शाम होती हुईं नजर आ रही हैं।

हमें यहां पर ए_सी लगाई हुई नजर आ रही है यहां पर हमें लाइटिंग जलती हुई दिख रही है।

यहां पर काफी सारे हमें रेडियो दिखाई दे रहे हैं।